यह एक बेड है उसपर साड़ी कुछ अ--

और कुछ कपड़े अ रखे हुए है पॉलिथिनो मे पैक्स --

एक अह रस्सी से इनको बांध रहा है एक ऊपर से रस्सी को --

गोल गोल अ चेयर जैसी है कुछ अ हरे कलर का पंखा है।

यह एक कुछ अ समुन्दर के अ किनारे बैठा है पत्थर पर।

और बगल मे वाइट कलर के कपड़े पहने हुए कुछ अ--

हिस्सा लग रहा है लेकिन आगे जो एक डी जे मशीन रखी है दो ठो और वहां पे दो बड़े बड़े चिमनियाँ दिख रहे हैं।